सबसे पहले हमें एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

रास्ता भी बना के है चलने के लिए और पीछे में--

यहां में हमको बहोत ज्यादा मी लोग दिखाई दे रहे हैं।

सबसे पहले यहां में एक घर दिखाई दे रहा है जिसमें--

गेट भी बनाके हैं और यहां में गेट का बाहर में बाइक लोग भी खड़ा है।

उसका बेटा कुछ अंदर चेक कर रहा है और वो औरत का हाथ में--

यहाँ मे हमको सबसे पहले तीन आदमी दिखाई दे रहा है।

घर भी दिखाई दे रहा है।

और ये बिल्डिंग का विंडो लोग भी खोल के भी दिखाई दे रहा है।

सबसे पहले यहां में स्टैचू लोग बना के है गोल्डन कलर से।

लाइक स्टैचू का सामने में यहाँ में पोस्ट भी लगाके है। लाइट पोस्ट और पीछे में पहाड़ लुक भी दिख रहा है।

और ये फेंसिंग का ऊपर में एकठू ब्लैक कलर कपड़ा भी लगा के है।

यह में सबसे पहले एक हाथी दिखाई दे रहा है।

उसका सामने में बहुत सारा आदमी लोग भी है।

यहां में हमको बहोत ज्यादा डुएट दिखाई दे रहा है जोकि हीरो डुएट कंपनी का है।

वहाँ में हमको टी का टीन भी दिखाई दे रहा है। वहां में घास लोग भी दिखाई दे रहा है।

और उसका आगे में बहुत ज्यादा आदमी लोग भी है।

एक कप भी दिखाई दे रहा है जो स्माइल का इमोजी से--

और यहां में जंगल भी दिखाई दे रहा है।

और यहाँ हमें वायर रूपी दिखाई दे रहा है।

यहां में एक ठो गमला है ऑरेंज कलर का।